आप देख रहे है यह एक गार्डन का फोटो है और अप देख रहे नीचे घास लगी है ये यहां चरवाहा पुरे सभी अपने जानवरों को चराने के लिए लेके आया है

आप फोटो देख रहे है ये मज्जिद का फोटो है जिसमे आप देख रहे है दोनों तरफ यहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है सामने देख रहे है सामने एक नारियल का कितना बड़ा एक वरक्ष यहाँ पर लगा हुआ है अभी शाम का समय है यहाँ थोरा अँधेरा भी अभी तक होने लगा है।

ये फोटो आप देख रहे हैं ये एक गार्डेन का फोटो है जिसमें तरह-तरह के झूले आप देख रहे हैं कितने सारे झूले लगे हुए हैं यहाँ पर सभी अपनी फैमिली के साथ आते हैं।

ये फोटो आप देख रहे हैं ये एक प्लेटफार्म का है यहाँ पर ट्रेन रूकती है आप देख रहे हैं कितने सारे व्यक्ति इस प्लेटफार्म पर बैठे हुए है यहाँ पर का बना हुआ है जिसमें सभी नीचे व्य --